बहोत अच्छी लग रहीं हैं उनके फ हाथ में फोन दिख रहा है।

यह दृश्य एक लड़के का दिख रहा है।

यह दुकान लग रही है दुकान का दृश्य बड़ा अच्छा दिख रहा है यहां पर पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

सामने की तरफ दो व्यक्ति बैठे हुए हैं वीणा बजा रहे हैं।

बाहर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य एक कैफ़े का नजर आ रहा हैं।